दो हाउस है यहां पे जिम है जिम हाउस हैं यहां पे जिम होती है जिम का की मशीनें रखी है यहां पे फ़ोटो है एक बॉयस एण्ड गर्ल्स की --

एण्ड यहां पे टींस है होम है यहां पे ब्लू कलर का होम है एण्ड व्हाइट कलर की पोस्टर भी है बाजु में--

ये बहुत सारी चीज़े है एण्ड यहां पे शाम टाइम की पिक्चर है ये।

घास भी दिख रही है यहाँ पे मिटटी है रेत है एण्ड यहाँ पे बहुत बङे पेङ है एण्ड आसमान एण्ड ये दोपहर टाइम की पिक्चर है।

जिनमे टोपी पहने है ब्लू कलर की एण्ड स्वेटर एण्ड टी शर्ट भी पहनी है और का जीन्स भी पहना है वहां पर बहुत सारे लोग है जो कुछ काम कर रहे है इनने भी कपड़े पहने है रंग बिरंगी और लाइटिंग लगी हुई है एण्ड यहां पर तीन भी लगी है!शोर

एन्ड वाइट कलर यह पर बहुत सारे पोस्टर भी लगे हुए हैं एन्ड यहां पर कुछ बहुत सारी जनता है जो उन्हें अलग-अलग कपड़े पहनी रंगबिरगी कलर की यह पर ब्लू कलर की पन्नी भी है एन्ड यहां पर भइया है जो कुछ सामान बेच रहे हैं यहां पर भी बहुत सारे --